सामने रिसेप्शन है रिसेप्शन पे कुर्सी लगी है काले कलर की उसके बाहर भी दो-तीन कुर्सी है काले कलर की।

अअ होटल हो सकता है ये होटल या कुछ और कोई घर--

क्योंकि यहाँ पर होटल ही लग रहा है ये और काफी सारे कमरे हैं गेट हैं।

और दो एक ही घर है ये ऊपर नीचे बना रखे हैं और काफी अच्छा शेप दे रखा है घर का--

और काफी सारे लोग कुर्ते पहन रखे हैं सभी नहीं लाल कलर के कुर्ते हैं कुर्ता पजामा है।

ये काफी अच्छा दिख रहा है पहाड़ है पहाड़ी इलाका है पहाड़ी है फिर एरिया है पूरा ग्रीन --

और वाइट कलर की लाइन लगी लाइन खींची हुई है पूरी ट्रेन में ये नीचे की तरफ--

कोई बैठा हुआ है और काफी सारी बाइक्स है।

ये जिम है ज्यादा बड़े जिम नहीं है ठीक-ठाक जिम है।

और यहां पे इक्विपमेंट लगे हुए हैं काफी सारे इक्विपमेंट है आरेंज कलर का पेंट हो रखा है नीचे मैट बिछी हुई है।

और सामने ही जो है दो आदमी जो कि चलते हुए जा रहे हैं ढलान है ये कोई पहाड़ी इलाका लग रहा है जहाँपर ये --

और भी लोग है लेडिस ने जो है कुछ पहना हुआ है ग्रे कलर का बैग लिया हुआ है बैगनी कलर का।

बीच में एक टेबल है जो कि लकड़ी की वुडन लग रही है वुडन टेबल--

वहां सामने एक टेबल है टेबल के ऊपर कुछ चीजें रखी हुई है शायद टिशू पेपर भी है उनमें से एक।

और एक स्पाइडर मैन का है और एक पीकॉक उल्लू का ऑउल का--

और दोनों ही एक छोटे से सोफे में बैठे हैं स्टेज पर--

ये एक फैन लगा हुआ है दीवार पे रेड कलर का दीवार हैं।